ये देखिये गाइस ये भी एक शॉप है और ये गाय खड़ी हैं और कुछ लोग हैं खड़े | शॉप के बगल में लाइट लगी हैं।